साइड में येलो कलर की बिल्डिंग के ऊपर काली कलर की टंकी रखी हुई है।

इस तस्वीर में बहोत ज्यादा हरियाली नजर आ रहा है।

एक कार खुली हुई पड़ी नजर आ रही है।

बहुत सारे टायरड टायर टूल्स रखे हुए हैं।

उस ने चेक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जूता पहना हुआ है।

ये एक रूम की तस्वीर नजर आ रही है जिसपे एक बेड डला है।

बीच में स्टील का डिवाइडर भी लगा हुआ है।

एक आदमी बैग पेहना हुआ कुछ खरीद रहा है और एक आदमी पिंक कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पेंट में खड़ा हुआ है।

कार के पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग के ऊपर दो इंडियन झंडे भी लगे हुए हैं।

बैंच में बहुत सारे लड़का लड़की बैठ के कुछ लिख रहे हैं।

कार के अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

मस्जिद का कलर येलो और व्हाइट नजर आ रहा है।

बहुत सारे पैकेटें भी नज़र आ रही है चिप्स के।

सारा ब्रांड का शोरूम भी दिख रहा है।

ये एक दुकान कि फोटो है।

मैगी मसाला भी दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे बेंचेज डले हुए हैं।

जिम में तीन लोग जिम करते हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे ग्रीन और काला मेट डला हुआ है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

सीलिंग पे पर्पल और येलो कलर की लाइटिंग लगी हुई है।

व्हाइट कलर के भी फूल के मालाएं टंगी हुई है।

लड़की के टी शर्ट का कलर ब्लू है और और रेड ड्रेस पहनी हुई नजर आ रही है।